यह एक घर है। इस घर के सामने एक --

एक बैनर में कन्या सर्विस लिखा हुआ है यह मोटर साइकिल का गैरेज होगा।

घर है यह घर बहुत बड़ा है यह घर --

यहाँ पर अनेक प्रकार के मिठाई लिट्टीचोखा आदि मिलते हैं। इस दुकान के सामने एक ठेले में --

इस बिल्डिंग के बगल में सड़क है सड़क पर बहुत से आदमी घूम रहें --

खड़े है यहां बहुत से दुकान भी है।

मांगने से पूर्ण होता है इस मंदिर के बगल में एक पेड़ है और यहां मंदिर के बगल में --

कुर्सी लगा हुआ है यहाँ पर एक लड़का बैठा है यह जगह काफ़ी आकर्षक --

इसमें मैदान के बगल में बड़े-बड़े है इस मैदान के बगल में --